दो कुर्सियों पर दो आदमी बैठे हुए खाना खा रहे हैं।

और सामने विंडो और कमरे के गेट पर बहुत सारे कलरफुल लाइट लगी है।

यहां पर मजदूर सीमेंट को घोलकर डाल रहे हैं।

मेरे सामने एक ब्लैक कलर का बड़ा गेट लगा है।

और सामने से प्लेग्राउंड दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें खुला गैरेज दिखाई दे रहा है।

इसकी दीवार पर चर्च का साइन बना है।

जिन पर हरे कलर कि चादर और हरे कलर के तकिये हैं।

यह एक नाई की दुकान है इस दुकान के अंदर दो कलर की चेयर रखी है।

बेड के ऊपर सफेद कलर की चादर डली है और एक लिहाफ पड़ा हुआ है।

और इस रथ में बहोत सारी मूर्ति बनकर खड़ी हुई है जिनके हाथ में त्रिशूल है।

और एक केतली रखी है और एक अंगीठी रखी हुई है।

यह एक इलेक्ट्रिक शॉप है इस शॉप के अंदर लकड़ी की रैंक लगी हुई है।

उसके शायद चारों तरफ दीवार हो रही है।

इसके बीच में एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा शीशा लगा है।

यह सुबह के नाश्ते की तस्वीर है।

और उसके ऊपर एक कटोरी में हरी चटनी रखी है।

और बेड के तकिए पर सफेद रंग का कुशन चढ़ा है।

यह एक क्रोकरी और स्टेशनरी की शॉप है।

और इसके अंदर रैंक के अंदर शीशे में कप प्याले और गिलास दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में छोटे छोटे पिलर के ऊपर छोटे छोटे झोपड़ी बने हैं।

इसके चारों तरफ फूल और अलग अलग तरह से डेकोरेशन की है।

जो की टेबल पर काले कलर के प्लेट रखी है।

इस स्कूल पर सामने एक बड़ा बैनर लगा है।

इस मस्जिद में कई सारे आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक प्लास्टिक क्रॉकरी की शॉप है।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

यह एक खुले जंगल की तस्वीर है।

उस छतरी के नीचे टेबल और कुर्सी रखे हुए कई आदमी बैठे हैं।

यह एक चर्च के आकार की तस्वीर है।

जिसके ऊपर लोहे की बल्लियों के ऊपर लोहे की टीन पड़ी है।

चर्च का निशान बना है।

यह एक कार वर्कशॉप है इस वर्कशॉप में एक रेड कलर की कार खड़ी है।

इसके चारों तरफ कई सारे आदमी खड़े हुए हैं।